जा तस्वीर में सामने की तरफ एक मंदिर दिख रहो सफेद रंग को ऊपर लाल रंग को घुममत दिख रहो पड़ोस सो तालाब --

जमीन हरे रंग की दिख रही बाहर गास दिख रही बहुत सारी बड़ों से पेड़ दिख रहो हैं।

पेड़ दिख रहे किनार पे और ऊपर आसमान दिख रहो नीलो --

छोटे-छोटे पौधा दिख रहा है पीछे सफेद रंग की बड़ी-सी बिल्डिंग दिख रही --

हलो जिसके ऊपर प्रिंसिपल लिखो है नीचे एक पीले रंग की दीवार दिख रही और एक आदमी चेयर पर बैठे देख रहे हैं।

पीछे के तरफ एक गुलाबी और लाल रंग का मंदिर दिख रहा हो जहाँ में खूब अच्छी डिजाइन बनी है।

तस्वीर में नीचे शंकर जी लेटे हुए हैं उनके बड़े बाल दिख रहे हैं।

वे हल्के बूरे रंग के दिख रहे हैं ऊपर काली देवी की तस्वीर बनी हुई है।

सभी ने रंग-बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं सभी सामने की तरफ़ देख रही हैं। पीछे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है।

तस्वीर में एक बहुत बड़ी नदी है जिसमें पानी हल्का काला दिख रहा है दो-तीन नाव दिख रही है किनार पर स्टील की फैमिंग की गई है।

तस्वीर में एक गाड़ी के ऊपर बहुत अच्छी डिजाइन बनी है।

ये तस्वीर एक पेट्रोल पंप की है।

जहाँ में दो पंप लगे सामने की तरफ एक पीछे की तरफ लगो सामने डंडा धरो --

रोशनी दिख रही जमीन पे --

सामने दीवार दिख रे लाल रंग की इटन से बनी उसके ऊपर में लंबे-लंबे गुंबद लगे तीन --

एक सफेद नीले रंग की पुरानी-सी बस दिख रही उसका दरवाजा खुला दिख रहा --

बगल में एक काले रंग को बोर्ड लगाओ दीवार को रंग हलको लाल और गुलाबी भी करो बड़े-बड़े पर्दा लगे खिड़कियों में --

जहाँ में काले-काले बड़े-बड़े बक्से धरे ऊपर के तरफ छोटे पीले और काले रंग के बक्से धरे ऊपर उसके छोटे-छोटे राउंड में --

चक्र जैसे बने हैं एक काला-सा बोर्ड लगा है --